उपर का जो पोर्शन है वह ब्लॅक कलर की हैऔर जो बिच का पोर्शन है वह डार्क ब्लू कलर की अंदर एक स्टेचू दिखाई दे रहा है वह खड़ी हुई हे।

और यहां पे अ एक दो लोग भी नजर आ रहे हैं एक आदमी पीछे हाथ करके टोपी पहन के खड़ा हुआ है जो कि पीछे की तरफ देख रहे हैं।

जिम है और जिम पे जीमनाट लोको का फोटोस लगे हुए है फर्स्ट जो फोटोस हे वोह बहत एक लड़की की है जिसने हात में रड पकड़े हुई है और यहा पे जिम की जो ईन्स्ट्रमेन्ट हे वोह सारे ब्लैक --

कलर की है यहाँ पे ए.सि. भी लगे हुए है यहाँ पे ए.सि. का कनेक्सन ऊपर की तरप लग रहे है और यहाँ पे एक लाइट -ए ज्वल रही है और यहाँ पे निचे का जो फर्स है ओ यल्लो कलर का है और यहाँ पे कोइ नजर नहीं--

दुकान लगी है मूर्ति की है यह दुकान पूरा ही ट्रिपाल की बनी हुई है। ऊपर का जो ट्रिपाल है वह ब्लैक कलर की और बांस की बनी हुई है और नीचे का जो दोनों साइड का है वह वाइट कलर ही है।

यहां पे बाजार लगी हुई है। यहां पे एक आदमी बाजार लगाया। और उसके साइड में और भी आदमी बाजार लगाया है यहां पे बहुत सारे सुंदर-सुंदर चीज मिल रही है। बाजार में इसमें बहुत दूर तक लगाई हुई है। यहां पे बहुत ही ज्यादा --

है जो की येलो कलर की है उसमें बैनर भी लगा हुआ है और हसपिटाल के एक साइड थोड़े से धूप पड़ने की वजह से वह चमक रही है और एक साइड कोई लाइक नहीं आ रही है।

एक जिम है और जिम का जो नीचे का फर्श हैवह येलो कलर की हैऔर जिम की जो दीवार है उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैंऔर एक पहले पोस्टर जो एक लड़की का पोस्टर हैजो हाथ से--